फ़ाइल लेके बैठा है जो उसमें कुछ लिख रहा है जो ऐसा लग रहा है कुछ समझ रहा है ।

जैसा की हम देख सकते है आदमी दिख रहा है जो ये ब्रिज पे खड़ा है जो ये ब्रिज है नदी के ऊपर बना है नदी के अंदर गहरा पानी दिख रहा है।

नदी के अंदर पानी साफ दिख रहा है पीछे जो हरे भरे पेड़ दिख रहे है एक पहाड़ी टाइप दिख रहा है जो बहुत दूर दिख रहा है ऊपर आसमान खुला दिख रहा है जो की बहुत अच्छा लग रहा है साइड में लाइट के फूल जो की बहुत अच्छे लग रहे है।

आधा शरीर कटा दिख रहा है ऊपर आसमान दिख रहा है पास एक नाव दिख रहा है जिसके ऊपर लकड़ियों से झंडे लगे हुए है जो की बहुत अच्छे लग रहे है एक टायर दिख रहा है ब्लेक कलर का ओर किनारा लग--

रेलिंग लगी हुई है लाइटिंग लगी हुयी है हरे भरे पेड़ दिख रहे है जिनमें लाय्टिंग लगी है गोल्डन कलर की वाईट कलर की और ग्रीन--

मच्छी काट रहे है उसके पास में एक व्यक्ति वो भी काट दिख रहा है एक लड़का है जो मास्क लगा कर खड़ा है पीछे दीवार दिख रही है पीछे खाली घर दिख रहा है ।

जैसे हम देख सकते है पीछे हरा कलर का भवन दिख रहा है उस पे नाम लिखा साथी--

रेड कलर में और एक ब्लेक कलर की शर्ट में खड़ा हुआ है एंड दो आदमी जो बिना कपड़ो के खड़े है आधे कपड़ो में ऊपर ब्रिज है जो ब्रिज पे भी बहुत सारे लोग दिख रहे है नीचे पानी है नदी में जो बहुत भरा हुआ है पीछे पेड़ दिख रहे है जो केले के दिख रहे है पीछे लेडिसे दिख रही है।

सामने का आदमी दिख रहा है एक दूसरा दिख रहा नीले कलर की टी-शर्ट पहनी है एक ने गुलाबी कलर की टी-शर्ट पहनी है।

एक पीछे आदमी दिख रहा है जो की बैठा हुआ दिख रहा है उसके पास में कंप्यूटर लगा हुआ है और दुकान में एक लाईट लगी हुई है और ये लाल रंग का बोर्ड लगा है ऊपर भी लाल बोर्ड है साईड में एक दरवाजा जिसमें कूलर दिख रहा है।

इधर हमको ये दिख रहा है इसमें लोग सेल्फी लेते हुए दिख रहे है दो लड़के है एक बच्चा है पीछे दो लड़के ओर है पीछे बहुत सारे लोग दिख रहे है ये जंगली इलाका दिख रहा है ऐसा लग रहा है ये--

जैसे की हम देख सकते है सामने लोग खड़े है ये लोग एक फेमिली जैसे दिख रहे है क्यों की इसमें आदमी और औरत बराबर दिख रहे है इसमें बच्चे भी दिख रहे है ऐसा लग रहा है की ये एक फैमिली है पर ये ईसाई लोगो की फेमिली है पीछे इनका--

सिम्बोल लगा हुआ है जो पतरे है जो ग्रे कलर के है जो दीवार है वो हरी कलर की पीछे खेत दिख रहे है पीछे हरे भरे पेड़ दिख रहे है जो की बहुत ही सुन्दर लग रहे है कपड़े भी इनके बहुत प्यारे लग--

जैसा की हमको दिख रहा है सामने एक आदमी खड़ा है आदमी बस के साथ खड़ा है बस ऐसा लग रहा है की आदमी की है आदमी जो है रेड कपडे में खड़ा हुआ है इसने काले कलर की पेंट पहनी हुई है नीचे चप्पल पहनी हुई है सर पे गमछा बंधा हुआ है।

जैसा की हम देख सकते हैं कि एक आदमी खड़ा है एक आदमी ऐसा लग रहा है कि वह चट्टान को पकड़े खड़ा है पर ऐसा नहीं है उसने सिर्फ हाथ लगा रखा है चट्टान अपने आप खड़ी है चट्टान के निचे गुफा जैसा लग रहा--

जेब में इसने कुछ भर रखा है पीछे तीन लोग दिख रहे है पीछे एक मंदिर जैसा लग रहा है और पीछे एक हरा भरा पेड़ दिख रहा है धुप आ रही है बहुत ही अच्छा नजारा दिख रहा है पीछे का।